जहाँ जो बहोत ज्यादा भीड़ जैसा लग रहा है मंडप बहोत ही ज्यादा सुंदर लग रा है।

यहाँ पे बहोत सारी औरत है जो हाथ में केंडल लिए हुए है और दीप जला रही है और यहाँ पे सब सफेद साड़ी पेहनी हुई है रंगोली है जो की राम सीता जी का है।

इंडियन पोस्ट ऑफिस का ऑफिस लग है पिंक कलर का जिसके बगल जिसके सामने एक आदमी जाड़ू लगा रहा है कचरा उठा रहा है।

यहाँ पे एक ऑफिस है जो की वाइट कलर का है जो की बहोत सुन्दर लग रहा है और बहोत साफ़ भी पीछे एक दिवार अ पीछे दीवाल पर एक घड़ी टंगी हुई है और एक फैन है।

यहाँ पे बहोत बड़ा सा बिल्डिंग है जिसके ऊपर अमर लिखा हुआ है नीचे फन अमर ज्योति लिखा हुआ है इधर साइड में एक ब्यूटीपार्लर है।

ये किसी मॉल का पिक लग रहा है जिसमे दो स्टेच्यू है जिसमे से एक में क्रीम और एक ने ब्लू कलर की शर्ट पेहन रखी है।

साइड साइड से बहोत सारे पेड़ है फल का ठेला लगा और बहोत सारी बाइक और बहोत सारा आदमी भी है।

और यहाँ साइड से कुछ गाड़ी लगी हुई है और ये सायद चिमनी की मसीन हे।

ये एक मार्केट सीन लग रहा है जहाँ नी जहाँ पे सामने में ब्लू कलर का कुछ बैनर लगा हुआ है और यहाँ पे बहोत ही ज्यादा ऑटो रिक्शा दिख रही है और बहोत ही भीड़ दिख रहा है।

पिंक वाइट येल्लो ग्रीन बहोत ही अलग-अलग और सुन्दर-सुन्दर फूल है ये बहोत ही अच्छा और खूबसूरत ही नज़ारा है।